जिसकी गेट है वो उसी से बने हुए हैं पास में एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

एक लकड़ी का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है एक बड़ी टेबल भी दिखाई दे रही है जो लकड़ी की बनी हुई है।

इस तस्वीर में मुझे एक हेयर कट करने वाली दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर तीन मुझे कुर्सियां दिखाई दे रही है।

कुछ कटोरी दिखाई दे रही है कुछ फल दिखाई दे रहे हैं एक पीतल का टोकना दिखाई दे रहा है स्टील की बाल्टी दिखाई दे रही है।

जिसके आगे कुछ स्कूटियां और मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है।

तस्वीरें बेचने वाली दुकान है इसमें एक बड़ा सालों का पंखा भी लगा हुआ है कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है।

पास में कुछ फ्रीजर दिखाई दे रहे हैं जिनके गेट है वो शीशे से बने हुए अंदर कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रही है।

और इसकी गेट है जो लोह के बने हुए बाकी साइड कुछ स्टील की बनी हुई रेलिंग भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो इसके अंदर --

उनके पीछे मुझे कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर कुछ नाम भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी भीड़ भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में मुझे महल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है हरा भरा कुछ ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

कुछ बड़े बड़े बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ तेल के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ बर्तन साफ करने वाले भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है जिसका बहुत बड़ा गेट भी है पास में कुछ भीड़ भी लगी हुई है।

और कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है एक ए_सी भी दिखाई दे रही कुछ पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।